यह एक जगह है यहाँ पे पेट्रोल भराया जाता है यहाँ पर छत है छत सफेद कलर की पुती है उस पे लाइट लगी है नीले कलर की।

एक चित्र है चित्र के पास एक इमारत बनी हुई है चित्र उस पे कुम्बद नुमा आकार के कुम्बद बनी है आगे पेड़ पौधे है ऊपर आसमान है आसमान बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

डिजाइन किया हुआ हरे भरे हरियाली है भूरे कलर का छत लाल कलर की है सफेद कलर का उसमें निशान बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत दृश्य--

जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियां दिख रही है सीढ़ियाँ कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे आ रही है जल भरा हुआ है चादर पत्थर से लगे हरियाली है।

चारों तरफ हरियाली-हरियाली है हिरण भूरे कलर के है और वो घास चरते हुए बोहोत ही सुंदर दिख रहे हैं।